और ये एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है और छोटी-छोटी लाइनों वाली लोहे की जलियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है और ग्रीन कलर के पेड़ भी दिख रहे हैं।

रोड है जहाँ पर सामने एक सफ़ेद कलर कि मस्जिद नजर आ रही है और यहाँ पर रोड पर ज़ेबरा क्रॉसिंग कि लाइनें भी बनी हुई दिख रही है और --